में दो तीन बच्चे भी हैं एक बच्चा बैठा हुआ है एक औरत भी है ।

और कुछ सामान वगैरा भी हैं।

और झरना भी बनाया गया है।

जो लोहे का बनाया गया कुर्सियां--

पीछे से टाइल्स बिछाया हुआ है।

है एक यह मशीन ब्लू रंग का पेंट किया गया--

हरे भरे घास फूस हैं नीले बादल किए हैं।

सामने कुछ सामान रखे हुए हैं।

बस के सामने एक आदमी खड़ा है जो वाइट रंग का शर्ट पहने हुए है।

यह चश्मे भी लगाई है।

बल्ब भी जल रहा है।

और यहां पर बड़े बड़े कुर्सियां लगी है।

और यहां पर सामान रखा हुआ है।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

नीचे जमीन दिख रहा है एक छोटा सा फूल का पौधा है।

इसमें बैलून से सजाया गया है।

और कुछ डिजाइनिंग दीवाल में बनाया गया है।

जो नीले ब्लू रंग के से दिखाई दे रहे हैं।

हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक आदमी खड़ा है।

और इधर मकान भी दिख रहे हैं।

नी यह एक मैदान है।

दीवाल व्हाइट रंग से पेंट किया गया।

इसमें एक दरवाजा है जो शीशे का हैं।

और अंदर से एक आदमी दिखाई दे रहा है।

इसमें व्हाइट रंग का दिवाल पेंट किया हुआ--

में यहां पंखा रखा गया है।

ज्यादातर ब्लू रंग की दिखाई दे रही है इधर बल्ब ।

और इसमें कुर्सियां हैं बेंच है।

जो पीले रंग से दीवार पेंट किया गया है।

और यहां धूप निकला हुआ है।

उधर आसमान दिख रहा है जो पूरा व्हाइट है।

इसमें एक दरवाजा है जो लोहे का है।

ऊपर से बल्ब जल रहा है।

एक पंख लगा हुआ है।

जो वाइट रंग से पेंट किया गया है नीचे टाइल्स बिछाया हुआ है ।

एक कूलर लग रखा गया है।

और बहोत सारा प्लास्टिक में इयर फोन्स रखे गए हैं।

नीचे हरे भरे घास फूस है।

कुछ बल्ब जल रही है।

सी_सी_टी_वी कैमरे लगे हुए हैं।

और इसमें बल्ब जल रही--